सामने एक स्विमिंग पूल बना हुआ है पास ही में घास है ऊपर आसमान साफ़ नज़र आ रहा है दूर-दूर पे पेड़ दिख रहे है।

साथ ही में एक एग्जॉस्ट फैन भी दिख रही है नीचे कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं कुर्सियाँ लाल रंग की हे और कु कुर्सियाँ पे प्लास्टिक का कवर लगा हुआ दिख रहा है।

पीछे एक बडा सा पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है फर्श में कई सारे कागज के रिबन फेके हुए नजर आ रहे हैं।

--में है एक आदमी पास में खड़ा दिख रहा है दूर मे छोटे छोटे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं ऊपर आसमान नीला और साफ नजर आ रहा है।

सामने एक कमरा दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे पिंजरे रखे हुए दिखाई दे रहे है जिसके अंदर बहुत सारी मुर्गी दिखाई --

एक लंबी सी ब्रिज नजर आ रही है ब्रिज के नीचे एक नदी बहता हुआ नजर आ रही है।